और एक ब्लू कलर का छोटी सी पलास्टिक की सीढ़ी भी रखी हुई है। यहाँ पर लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं काफी सारी।

और काफी सारी चीजें रखी हुई यहाँ पर घोड़ा भी रखा हुआ हैं।

यहाँ पर हमें एक और रूम दिखाई दे रहा है। रूम के पास एक और रूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें एक पर्दा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पम्प के पास ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

ऊपर के पास एक टेबल दिखाई अ टेबल्स दिखाई दे रहा है। टेबल्स पर एक स्टेशन का पोस्टर लगा हुआ है।